बगल में बड़ा सा एक बैंक है जिसके ऊपर ब्लू कलर का बड़ा सा बोर्ड लिखा लगा हुआ है।

ये एक बड़ा सा वेडिंग हॉल है जो कि टेंट लगे हुए हैं इसमें।

पीछे वॉल बहुत सारे फूल लगे हैं प्लास्टिक के--

नीचे ईटों से डिजाइन दार बनाया गया है सफेद और रेड कलर में।

लाइन से छोटे छोटे ग्रीन कलर के घने पेड़ लगे हैं।

उन पर येलो कलर के और सफेद कलर के फूल लगे हैं।

बगल में पेट्रोल पंप वाली गाड़ी खड़ी है और येलो कलर लगा हुआ है।

एक झूला लटक रहा है जिसके अंदर एक बच्चा बैठा झूल रहा है।

जमीने कच्ची मट्टी की है ग्रीन की घास उगी है उन पर सूखे पत्ते पड़े हुए हैं।

चौकोर साईड में रेलिंग लगी है लोहे की।

सामने बड़ा सा तालाब है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है।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

सामने लोहे का गेट लगा हुआ हैं जो कि कत्थई कलर का है।

ये एक बड़ा सा लग्जरी रेस्टोरेंट है यहां पर लंबी लंबी मेजे लगी हुई हैं लाइन से।

दो रॉड लटक रहे हैं एक कैमरा लगा हुआ है।